लोहे के एंगल्स और टीन शेड से मिलकर बना हुआ नजर आ रहा है और यहां पर बहुत सारी--

हरि-भरी घास हमे दिखाई दे रही हैं और यहां पर हमे कलरफुल --

बने हुए हैं यहां पर उसमें एक बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यह एक स्टैंड पर रखे हुए दिखाई दे रहे--

इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री और फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें चिमनियां हमें दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज मे हमें बहोत सारी बकरियां दिखाई दे रही है और यहां पर आस पास जाली का एक नेट लगाया हुआ है।

यहां पर हमें एक पर्यटन स्थल नजर आ रहा है यहां पर गार्डन बने हुए हैं।

प्लास्टिक के सूपड़े वगैरा यहां पर रख हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस क्लीनिक के बाहर व्हाइट कलर की टाइल्स लगी है और यह एक रेड शेड का बाहर इसका दिवाले दिखाई --

यहां पर हमें फूलों की मालाओं से बना हुआ--

इस इमेज मैं हमें अं टाईल्स क्या शॉप दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज में हमें एक घर दिख रहा है इस घर का दरवाजा ब्लू कलर का है।

और इसमें श्री श्याम इंटरप्राइजेज का ये शॉप --

इस इमेज में हमें एक फूलों की मंडी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ शॉप कीपर दुकान दार--

हार फुल की दुकान लगा कर बैठे हुए हैं।

यहाँ पर खाने के टेबल कुर्सी लगे हैं एक बाइक खड़ी हुई हैं।

कुछ चेयर्स लगी हैं और यहां पर इस गैरेज में--

वह अभी के लिए ऑफ नजर आ रही है।

और एक वॉल पर पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर हमें एक पुल के ऊपर एक व्यक्ति साइकिल से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसने अपने साइकिल पर बहोत सारा--

यहां पर हमे एक बगीचा नज़र आ रहा है इस बगीचे में--

और बाहर की तरफ बहोत सारे प्लांट्स भी लगे हुए यहां पर दिखाई दे रहे--